सामने हरे कलर का कार्पेट हैं सामने होडिंग लगा हुआ है ब्लैक कलर का भी कार्पेट बिछा हुआ है कांच भी लगा हुआ है साइड में अंदर दरवाजा जाने का रास्ता दिख रहा है।

यह एक खाली जगह है रास्ता अंदर जाने का साइड में तीन तरह की फेंसिंग लगी हुई है।

यह एक रूम कमरा दिख रहा हैं अंदर जाने का दरवाज़ा भी दिख रहा हैं बाहर बॉक्स ऑफिस लिखा हैं एक तरफ नोवा लिखा हुआ हैं नीचे कार्पेट हरे कलर का बिछा हैं।

घास भी उगती हुई दिख रही हैं नीचे पानी बहुत सारा भरा हुआ हैं ऊपर आसमान दिख रहा हैं।

बहुत सारे औरत भी दिख रही है घर बना हुआ दिख रहा है साइड में शटर है ऊपर एक बैरन लगा है।

हरे-हरे पेड़ भी दिख रहे हैआसमान दिख रहा है दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे है।

यह रोड पे गाड़ी ट्रैक्टर जाते हुए दिख रहा है जहाँ बहुत सारी औरतें आदमी दिख रहे हैं।